पीछे की तरफ बहोत सारे वॉल मिरर लगे हुए है जोकि कुछ गोल और कुछ चौकोर और कुछ डिजाइन बने हुए है नीचे की तरफ--

सभी ने अपनी नाक को पकड़ा हुआ है रूम में एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ है सामने दीवार पर कुछ --

यहाँ जंगल में बहोत सारे हिरन दिख रहे हैं जो कि पत्ते और घास खा रहे हैं।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

दो तीन रस्सियों से बांधा हुआ है और वहां चांद नजर आ रहा है।

यहाँ एक बोहोत बड़े कमरे में बोहोत सारे काले कलर के सोफे रखे हुए हैं उसी कमरे में एक काउंटर भी बना हुआ है सामने की तरफ --

बहोत सारे छोटे-छोटे गमले रखे हुए हैं जिसमे पेड़ लगे हुए हैं।